यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है की किसी चीज़ का मीटिंग हो रहा है और पीछे में हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तस्वीर लगा हुआ है।

और यहाँ एक पीछे में पहाड़ नज़र रहा है और पीछे में पानी भी है जो कि स्थलीय है और यहाँ एक पूल भी नजर आ --

और काफी सारे बच्चे है काफी सारे लोग है और एक बड़ा-सा एक चाँद जैसा लेकिन उल्टा है और अच्छा --

और पीछे में एक घर नज़र आ रहा है और सामने में उन्ही के सामने में एक नारियल का पेड़ नज़र आ रहा है जोकि काफी लम्बा है और उनके पीछे में बहुत सारे गाछ वृक्ष--